इस घर में दो पुलिस --

बात कर रहा है फ़ोन से--

एक व्यक्ति बजा रहे हैं साइड में घर घर घर बन रहा हैं ।

और बहुत से चिड़ियाँ उड़ रही हैं और एक-दो नांव में--

यहाँ बहुत से लाइट लगे हुए हैं।